यख मा जी एक बहुत बडू हॉल छ यह एक किताबवाला की दुकान छ यख अलग-अलग खानों पर अलग- अलग प्रकार की किताबें छ रखीं यख मा जी तीन आदमी बैठ्यां भी छन।